यहां पे लाल बैटरी है व्हाइट बैटरी है पीला बैटरी है नीला बैटरी है और यहां पर सब तरीका का बैटरी है। व्हाइट है पीला है ब्लू है निला है पीला है हरा है यहां पे--

यहां पे एक मर्द है लाल कलर का बोल पोस्टर लगा हुआ है नीचे समान बिक रहा है एक--

यहां पे दुकान पे बैलून है सब कलर का बैलून है एक गुड्डा सा भी है कितना प्यारा लग रहा है दो बाइक है कार ह --

अबे हरा हरा दिख रहा है इतना मस्त लग रहा है चट है दोनों तरफ दोनों तरफ दो मंजिल का है सामने एक बिल्डिंग है हरा कलर का फूल सब है वाओ।

बहुत अच्छा लग रहा है डांस वाव मस्त है मस--

होटल के तीन मास्क चाहे बैग रखा हुआ है एक दम।

रेड कलर का ड्रीम लगा हुआ है ब्लैक कलर का टायर इधर फेंका है वो--

वाओ वाइट कलर का एकदम ब्रांडा है बैठने वाला एक कौवा भी है उपे।

वाओ कितना मंजिल बन रहा है दस पंद्रह मंजिल बन रहा है ब्लू कलर का वो लगा ईटा भी रखा हुआ है एकदम बहुत दूर।

यहां पे एक कुर्सी भी है बॉउंड्री भी लगा हुआ है वॉव कितना --

ये पान सौ से सात सौ तक ले एमे दो तीन मर्द भी आए हुए हैं।

यहां पे सब किताब मिलता है ए टू ज अंदल का मुस्कुराहट है।

रेस्टोरेंट वाव मैं इसको लेकर जाऊंगा कभी इसे ले जाऊंगा कभी इसमें --

यहां पे एक म मस्जिद बन रहा है वाव कितनी मस्त है।

यहां पे दो तीन दवाई रखा हुआ है ब्लैक ब्लैक बहोत अच्छा लग रहा है बैठने वाला है।

वाओ कितनी मस्त है स्कूटी पे दो लड़की जा रही है एक ऑटो आ रहा है एक अंकल जा रहे है एक कचरा वाला डिब्बा है।

लिए नाचने वाला बहुत अच्छा लग रहा है।

बच्ची लड़ी सब है लड़का है छोटा छोटा लड़की सब है।

यहां पे चार पांच गाई है बहुत अच्छे से बान्हा हुआ है।

पीछे भी दो तीन पंखा लगा हुआ है चार पांच एक है बहुत--

पास दुकान है दुकान में एक मर्द खड़ा हुआ है रेड कलर का--

दस परसेंट का छूट मिलेगा दस रुपया--

यहां पे अब लोग देख सकते हैं कितने टावर हैं यहां पे--

ये पौधा है जंगल है कुछ यहां पे बेकार लग रहा है।

बहुत ज्यादा बाढ़ पानी आए हुए हैं फुल ब्लैक से ब्लैक है पानी भी--

झाड़ भी बहुत अच्छा लग रहा है लग रहा मंदिर है मंदिर बहुत अच्छा है।

यहां बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बहोत बड़ा हॉस्पिटल है पचास साठ मंजिल हॉस्पिटल है आप लोग देखिए गाइस बहुत सारा मंजिल है।

बाव कितनी मस्त पानी है पानी के साइड में पेड़ लगा हुआ है उधर एक छत है देखिए असमान कितना बु--